सबकुछ खा रहे हैं दुकान है छोटा गाड़ी है जिसमें बच्चा --

पानी है एक पहाड़ नजर आ रहा है।

पिच्छे बहुत बड़ा बिल्डिंग है दो - तीन बिल्डिंग जो की बहुत बड़ा - बड़ा है सामने बिजली का खंबा है बिजली का तार है।